और स्त्री ने एक सूट और सलवार पहने हुए हैं जो येलो कलर का है और यहां पे चार लोग बै--

और क्रीम कलर का साड़ी है इस स्कूल के अंदर बहोत से बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं व्हाइट सा कलर का शर्ट पहने हुए--

अपना अपना गले मिल रहे हैं इधर के एरिया भी मस्त--

इस घर के अगल बगल में पौधे है जो एकदम अच्छे तरह से दिखाई दे रहे हरे हरे रंग का है और एक कार लगा हुआ--

यहां का मौसम अंधेरा टाइप का है कितना अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहाँ सब्जी मंडी देख के मुझे इतना अच्छा लगा की यहाँ पे हर एक रंग का आदमी आते है यहाँ से समान लेके जाते है मंडी से मंडी में हर एक तरह-तरह का समान मिलते हैं।

यहां पे हर एक रंग का सामान रखा हुआ है एक कुर्सी भी है जो रेड कलर का है यहां पे।